नमस्कार जीचेम्पेंट में एरोमेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे साइक्लोहेक्ज़ेन को साइक्लोहेक्ज़ीन में बदलना साइक्लोहेक्सीन को बेन्ज़ीन में बदलना बेन्ज़ीन रिंग के हाइड्रोजन को अन्य परमाणु से बदलना बेन्ज़ीन रिंग के हाइड्रोजन को परमाणुओं के समूह से बदलना दो अणुओं को मर्ज करना यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोल ली है
सबसे पहले डिस्प्ले एरिया पर एक सिक्स मेम्बर्ड साइकिल जोड़ें
एड आ सिक्स मेंबर्ड साइकिल टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
साइकिल के प्रत्येक कोने पर दो बॉन्ड्स जोड़ें
बॉन्ड्स को इस प्रकार स्थित करें कि कोई भी दो बॉन्ड आपस में न टकराएं
ऐसा करने के लिए बॉन्ड्स पर क्लिक करें और उचित स्थान पर खीचें
साइकिल के सारे कोनों पर कार्बन परमाणु प्रदर्शित करें
किसी एक कोने पर राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू प्रदर्शित होता है
एटम चुनें और फिर डिस्प्ले सिंबल पर क्लिक करें
इसी तरह साइकिल के सारे कोनों पर कार्बन परमाणु जोड़ें
बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने के लिए कीबोर्ड पर ह दबाएं
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
बॉन्ड्स की सभी स्थितियों पर क्लिक करें
दोबारा देखें कि कोई दो हाइड्रोजन्स एक दूसरे के ऊपर न आ जाएँ
प्राप्त स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्ज़ेन है
स्ट्रक्चर को कॉपी और पेस्ट करें
CTRLA दबाकर स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें
CTRLC दबाकर स्ट्रक्चर को कॉपी और CTRLV दबाकर पेस्ट करें
अब दूसरे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्ज़ेन स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्ज़ीनमें बदलें
इरेज़र टूल पर क्लिक करें
प्रत्येक संलग्न कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटायें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
फिर डिलीट किये हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच वाले बॉन्ड पर क्लिक करें
एक डबल बॉन्ड बनता है
प्राप्त स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्ज़ीन है
अब साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्ज़ीन को साइक्लोहेक्साडीन साइक्लोहेक्ज़ाडाइन में बदलें और फिर बेंजीन बेंज़ीन में
निश्चित कर लें कि कर्रेंट एलिमेंट कार्बन है
इरेज़र टूल पर क्लिक करें
प्रत्येक संलग्न कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटायें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ थे एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
फिर डिलीट किये हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच वाले बॉन्ड पर क्लिक करें
दूसरा डबल बॉन्ड बनता है
प्राप्त स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्साडीन साइक्लोहेक्ज़ाडाइन है
इसी तरह तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं
प्राप्त स्ट्रक्चर बेंजीन बेंज़ीन है
एक नियत कार्य की तरह साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनायें और इसे साइक्लोब्यूटेडीन साइक्लोब्यूटाडाइन में बदलें
साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेन्टेन और इसको साइक्लोपेंटाडीन साइक्लोपेंटाडाइन में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
आगे बेंजीन बेंज़ीन के डेरिवेटिव्स के बारे में सीखते हैं
भिन्न केमिकल कंपाउंड्स प्राप्त करने के लिए बेंजीन बेंज़ीन में हाइड्रोजन को फंक्शनल समूहों से बदल सकते हैं
वो फंक्शनल समूहों जो हाइड्रोजन को बदलते हैं निम्न हैं फ्लूरो मिथाइल नाइट्रो हाइड्रॉक्सी और अन्य
डिस्प्ले एरिया पर दो बार बेंज़ीन स्ट्रक्चर को कॉपी और पेस्ट करें
बेंज़ीन स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर्स को कॉपी करने के लिए CTRLC दबाएं और पेस्ट करने के लिए दो बार CTRLV दबाएं
पहले बेंज़ीन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को फ्लोरिन फ्लोरीन परमाणु से बदलें
कीबोर्ड पर फ़ दबाएं
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
हाइड्रोजन को फ्लोरिन से बदलने के लिए इस पर क्लिक करें
प्राप्त स्ट्रक्चर फ्लोरोबेंज़ीन फ्लोरोबेंज़ीन है
आगे दूसरे बेंज़ीन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को परमाणुओं के समूह से बदलें
एड ओर मॉडिफाई आ ग्रुप ओएफ एटम्स टूल पर क्लिक करें
किसी भी एक हाइड्रोजन पर क्लिक करें
देखें कि हाइड्रोजन एक टिमटिमाते कर्सर के साथ एक हरे बॉक्स में बंद है
हाइड्रोजन को मिथाइल समूह से बदलें
हाइड्रोजन को हटायें और टाइप करें बड़ा सी Hऔर 3 डिस्प्ले एरिया पर कहीं भी क्लिक करें
प्राप्त स्ट्रक्चर मिथाइल बेंजीन मिथाइल बेंज़ीन है
तीसरे बेंजीन बेंज़ीन के हाइड्रोजन को नाइट्रो नाइट्रो समूह से बदलें
किसी भी एक हाइड्रोजन पर क्लिक करें
हाइड्रोजन हटायें और टाइप करें बड़ा एन ओ 2 प्राप्त स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो बेंज़ीन है
अब बेंजीन रिंग बेंज़ीन रिंग में कार्बन की स्थितियों को देखें
बेंजीन बेंज़ीन में छः कार्बन परमाणुओं को 1 से 6 तक नम्बर्स दिए गए हैं
हाइड्रोजन को बदलने से पहले सभी छः स्थितियां समान हैं
जब हाइड्रोजन को फंक्शनल समूह के द्वारा बदला जाता है तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी बदलती है
इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी प्रतिस्थापी पर निर्भर करती है
बेंज़ीन के एकल प्रतिस्थापित कंपाउंड को निम्न स्थितियों पर बदला जा सकता है 1 और 4 पैरा स्थिति 2 और 6 ऑर्थो स्थिति 3 और 5 मेटा स्थिति अब मिथाइलबेंजीन मिथाइलबेंज़ीन स्ट्रक्चर को किसी अन्य मिथाइल समूह के साथ बदलते हैं
एड ओर मॉडिफाई आ ग्रुप ओएफ एटम्स टूल पर क्लिक करें
रिंग के दूसरे हाइड्रोजन की स्थिति पर क्लिक करें
हरे बॉक्स में हाइड्रोजन को मिथाइल समूह से बदलें
टाइप करें बड़ा सी ह 3
नया प्राप्त स्ट्रक्चर ortho जाइलीन है
नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंज़ीन को कार्बोक्सी कारबॉक्सी समूह के साथ बदलें
रिंग के चौथे हाइड्रोजन की स्थिति पर क्लिक करें
हरे बॉक्स में हाइड्रोजन को कार्बोक्सी कारबॉक्सी समूह से बदलें
टाइप करें बड़ा सी ओ ओ ह नया प्राप्त स्ट्रक्चर para नाइट्रोबेंजोइक एसिड है
प्रक्रिया को अनडू करने के लिए CTRLZ दबाएं
नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंज़ीन के तीसरे हाइड्रोजन की स्थिति को नाइट्रो समूह से बदलें
हाइड्रोजन हटायें और टाइप करें बड़ा एन ओ 2 नया प्राप्त स्ट्रक्चर meta डाइनाइट्रोबेंजीन है
यहाँ एक नियत कार्य है बेंज़ीन के सात स्ट्रक्चर्स बनायें
निम्न के किसी भी एक हाइड्रोजन को बदलें पहले बेंज़ीन में ब्रोमो के साथ दूसरे बेंज़ीन में आईओडीओ के साथ तीसरे बेंज़ीन में हाइड्रॉक्सी के साथ चौथे बेंज़ीन में एमीनो के साथ पाँचवें बेंज़ीन इथाइल के साथ छटे बेंज़ीन के दो हाइड्रोजन्स को भी क्लोरीन परमाणु से बदलें
सातवें बेंज़ीन की पहली और चौथी हाइड्रोजन की स्थितियों को कारबॉक्सी समूह से बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
अब दो स्ट्रक्चर्स को मर्ज करना सीखते हैं
अब एक नयी विंडो खोलते हैं
निश्चित कर लें कि कर्रेंट एलिमेंट कार्बन है
एड आ फोर मेंबर्ड साइकिल टूल पर क्लिक करें
दो बार डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
दूसरे स्ट्रक्चर पर क्लिक करें
इसे खींचें और पहले स्ट्रक्चर के पास लायें
ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें
स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करने के लिए CTRLA दबाएं
मर्ज त्वो मॉलिक्यूल्स टूल सक्रिय हो जाता है
अणुओं को मर्ज करने के लिए मर्ज त्वो मॉलिक्यूल्स टूल पर क्लिक करें
मर्जिंग देखने के लिए स्ट्रक्चर्स को खींचें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा साइक्लोहेक्ज़ेन को साइक्लोहेक्ज़ीन में बदलना साइक्लोहेक्ज़ीन को बेंज़ीन में बदलना बेंज़ीन के हाइड्रोजन को फ्लूरो मिथाइल नाइट्रो और कारबॉक्सी समूह के साथ बदला
दो फोर मेम्बर्ड साइकिल मर्ज करना
यहाँ एक नियत कार्य है
दो बेंज़ीन अणुओं को मर्ज करें दो पेंटाने पेन्टेन स्ट्रक्चर को मर्ज करें साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेन्टेन और साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्ज़ेन अणुओं को मर्ज करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस लिंक पर उपलब्ध विडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद